यहाँ पर एक व्यक्ति माला पहने हुए दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर आ ज़मीन पर टाइल्स लगे हुए दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर साइड में कुछ छोटे-छोटे पेड़ भी नज़र आ रहे हैं।

इस पिक्चर में एक ऑटो दिखाई दे रहा है जिसके साइड में एक व्यक्ति ऑटो के हैंडल को पकड़े हुए--

पिक्चर में एक व्यक्ति चेयर पर बैठे हुए फोटो क्लिक करवाता हुआ नजर आ रहा है यहां पर पीछे कुछ टेबल और कुर्सिए रखी हुइ दिखाइ दे रही है।

एक मूर्ति रखी हुई दिखाई दे रही है| यहां पर एक क्लॉक लगी हुई दिखाई दे रही है| यहां पर कुछ पंखे और लाइटस लगी हुई दिखाई दे रही हैं| ये--

इमेज में एक बड़ा-सा मैदान दिखाई दे रहा है जहां पर कुछ जगह पर पानी भी भरा हुआ दिखाई दे रहा है और कुछ जगाहों पर हरी-हरी घास दिखाई दे रही है।

ये पिक्चर एक वाटर पार्क की है जहाँ पर एक बड़ा सा स्विमिंग पूल दिखाई दे रहा है यहाँ पर कुछ स्लाइड्स लगी हुई दिखाई दे रहीं हैं।

इमेज में एक व्यक्ति लेटा हुआ दिखाई दे रहा है यहाँ पर इस व्यक्ति के हाथ में कुछ रिंग्स दिखाई दे रही हैं।

टर में दो व्यक्ति डेंटिंग पेंटिंग का काम करते हुए नजर आ रहे हैं यहाँ पर एक बड़ी-सी कार खड़ी हुई नजर आ रही है यहाँ पर एक बाल्टी रखी हुई नजर आ रही है।

इस पिक्चर में एक पुराना सा बहोत बड़ा सा मकबरा बना हुआ दिखाई दे रहा है यहाँ पर मकबरे में कुछ गेट भी बने हुए दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर कुछ सूखे सूखे हरे- हरे पेड़ भी दिखाई दे रहे --